कैबिनेट्स के ऊपर भगवान की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं।

छत दिखाई दे रही है छत पर पंखे लगे हुए हैं।

सिरप बॉटल्स दिख रहीं हैं टैबलेटस दिख रहें हैं और छोटे-छोटे बॉक्स दिख रहें हैं।

दीवार दिखाई दे रही है दीवार पे विंडोज बनी हुई हैं।

ये एक गौशाला दिखाई दे रही है यहाँ पे बहोत सारे गाय दिख रही है गाय का बछडा दिख रहा है एक बाल्टी दिखई दे रही है।

और डिब्बे भी दिखाई दे रहे हैं।

वहां पर बहोत सारे बच्चे दिख रहे हैं।

और यहां एक आदमी भी दिख रहा है जिसके हाथ में सुर सुरी दिख रही है।

यहां पर एक किला दिखाई दे रहा है।

और एक दरवाजा भी दिख रहा है।

और काउंटर दिख रहा है काउंटर में बहुत सारे समान दिख रहा है।

सामान दिख रहा है कैरम बोर्ड दिख रहा है।

और यहां स्टैचू दिखाई दे रहे है।

और शीशे की विंडोज दिख रहे हैं बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारी बिजली की तारे दिख रही है। थ्री व्हीलर दिख रहा है। स्कूटर दिखाई दे रहा है।

साइकिल दिख रही है आसमान दिख रहा है।

फर्श दिखाई दे रहा है फर्श पर टाइल्स लगी हुई है।